मुर्गे के बाजू में जाली दिखाई दे रही है।

पोस्टर के अंदर शहज जन सेवा केंद्र लिखा हुआ है।

एक बसाय भाई का शर्ट दिखाई दे रहा है पिक्चर में बहोत सारी कुर्सियां भी है।

ये कपड़े की दुकान का पिक्चर है।

नदी का जेहडा पेड़ पौधे के बीच से जा रहा है पिक्चर में बहोत सारे पत्थर है।

काफी बोतलें भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में बहोत से पेड़ के पीछे एक बहोत से बड़े और बहोत सारे कमरे दिखाई दे रहें हैं।